फ्लावर पॉट्स पॉट्स एक दो मैडम भी खड़े है साइड में।

उस कार के पास इर्द गिर्द में काफी सारे लोग नजर आ रहे है।

ये किसी घर का गेट है या ऐसा कह सकते है ये मस्जिद का गेट है हां मस्जिद का गेट है।